आप इसमें घूमते घूमते इसमें ही रहेंगे आप को इसमें से बाहर जाने का मन नहीं करेगा ये महल बहुत ही सुन्दर तरीके से किसी राजा ने बनाया हो।

एक झरना है जिसमे ऊपर से पानी गिर रहा है इस दृशय को देख कर हर आदमी आंनद और उल्लास से भर जाता है इस इस पानी में अनुपम संग्रह है जिसमे हर और पानी ही पानी दिखाई देता है।

यह एक प्राचीन किला है जिसमे सुंदर आकृति करके एक द्वार बनाया गया है इसमें बहुत ही अच्छी कलाकृति की गई है इसमें कारीगरों ने इतनी अच्छी शिल्पकला की है जिसको देखने के लिये --

यहाँ पर आपकी जरूरत का हर सामान उपलब्ध है यहाँ पर आकर आप जो भी मांगेंगे यहाँ पर वो आपको मिलेगा यहाँ पर किरणा स्टोर से लेकर हर चीज का सामान उपलब्ध है अभी बजार चालू है।

यहाँ पे आप फिसलते फिसलते इस स्विमिंग पूल में आयेंगे तथा उस आनंद को उठाने का अनुभव करेंगे जो आपके बचपन के दिनों में आपके गाँव के तालाब में मिलता था यह तालाब बहुत ही स्वच् --